कुछ यहाँ पे लेडी इ एक गर्ल्स बैठी हुई है। दो तीन यहाँ पे जेन्ट्स बैठे हुए है। एक चेयर है।

और यहाँ पे कुछ गमले दिखाई दे रहें हैं और वहाँ उम अ उम एक आदमी खड़ा हुआ है जहाँ बैनर्स लगा हुआ है और --

यहाँ एक शोरुम दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारी बाइक्स दिखाई दे रही है कुछ बॉयज के दिखाई दे रहे है लाइट्स --

कार दिखाई दे रही है और दो-तीन बाइक्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ चबूतरा लगा है जहां जिसके साइड में हमें एक चेयर दिखाई दे रही है।

यो की बनी हुई माला चढ़ी है फूल की बनी हुई माला चढ़ी है और यहाँ एक कपड़े की बनी हुई सीलिंग च दिखाई दे रही है।

गा रहे है और यहाँ पे बहोत सारे जो लोग है वो गाने वाले को देख रहे है केमरा लगा हुआ है जो रेकोर्ड कर रहा है और यहाँ बहोत सारे--

राकेश हेयर कटिंग सैलून --

यहाँ एक संक्रामक रोग अस्पताल अ करके लिखा हुआ है बहोत सारे पेड़-पौधे हैं।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

यहाँ एक ईमारत है जहां पर खिड़की लगी हुई हैं कुछ बेनर्स लगे हुए है और कुछ लोग खड़े है कुछ --

और यहाँ कुछ ऐसे अर्धकी पाठशाला करके एक बैनर लगा हुआ है बहोत सारी साड़ियों की लगी हुई हैं और यह एक बस्ती जैसा दिखाई दे रहा है।

पे बर्थडे सेलिब्रेशन का बैनर लगा हुआ है बहुत सारे बैलून्स दिखाई दे रहें हैं और इधर साइड में गर्ल्स बैठी है इस साइड में बॉय --

दो तिन गमले दिखाई दे रहे है जिसमे बोहोत हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं और इन बलुन्स का कलर पर्पल कलर दिखाई दे रहा --

यहाँ एक मैरेज लोंन है और यहाँ दो आदमी खड़े हुए है और एक यहाँ आदमी फोन पर बात --

बैनर लगा हुआ है उस साइड देख रहे है ऊपर कोको कोला करके बे-बैनर्स लगा हुआ है।

यहाँ बहोत सारी राखियाँ दिखाई दे रही है। एक जेन्ट्स दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का चार्ट दिखाई दे रहा है। यल्लो एंड पिंक कलर का टेंट दिखाई दे रही है कु --

यहाँ एक बहुत सुंदर ईमारत है बहुत सारे लेडिस और जेन्ट्स खड़े हुए है आगे दो जेन्ट्स है जो आ आ--